जीचेम्पेंट में एडिट प्रेफरेंस टेम्पलेट्स और रेसिड्यूज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रेफरन्स एडिट करना टेम्पलेट्स संचालित करना तैयार टेम्पलेट्स को उपयोग और सेलेक्ट करना नया टेम्प्लेट ऐड करना हम निम्न भी सीखेंगे रेज़िड्यूस का उपयोग और रेज़िड्यूस एडिट करना यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर से परिचित होने चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन पहले से ही खोल ली है
प्रेफरेन्सेस को एडिट करते हुए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं
एडिट मेन्यू पर जाएँ प्रेफरेन्सेस पर जाएँ और इस पर क्लिक करें
जीचेम्पेंट प्रेफरेंस विंडो खुलती है
पहला क्षेत्र डिफॉल्ट कंप्रेशन लेवेल फोर जीचेम्पेंट फाइल्स फाइल्स को सेव करने के लिए उपयोग होती है
डिफ़ॉल्ट से यह शून्य है
यदि यह शून्य नहीं है तो फाइल ग्जिप उपयोग करके कम्प्रेस होगी
मैं इनवर्ट वेज हैशेस अगले ट्यूटोरियल में कवर करुँगी
जीचेम्पेंट में प्रत्येक डॉक्यूमेंट संयुक्त थीम रखते हैं
डिफ़ॉल्ट थीम को जीचेम्पेंट ही रहने दें
अब मैं थीम सेक्शन में एर्रोस के बारे में विस्तार से समझाउंगी
टूल बॉक्स पर भिन्न तरह के एर्रोस देखें
एड एएन अरो फोर एएन इरिवर्सिबल रिएक्शन
एड आ पैर ओएफ अरोज फोर आ रिवर्सिबल रिएक्शन
एड एएन अरो फोर आ रेट्रोसिंथेसिस स्टेप
एड आ डबल हेडेड अरो टो रिप्रेजेंट मेसोमेरी
अब इन 4 एर्रोस को डिस्प्ले एरिया में ऐड करें
एड एएन अरो फोर एएन इरिवर्सिबल रिएक्शन टूल पर क्लिक करें फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
इसी तरह मैं डिस्प्ले एरिया में अन्य तरीके के एर्रोस ऐड करुँगी
प्रेफरेन्सेस डायलॉग बॉक्स में थीम क्षेत्र से एर्रोस सेलेक्ट करें
कॉन्टेक्सुअल मेन्यू खुलता है
यहाँ हम एर्रोस की लेंथ विड्थ और डिस्टेंस बड़ा या घटा सकते हैं
अब माउस से अप या डाउन एरो त्रिभुज पर क्लिक करें
और डिस्प्ले एरिया में एर्रोस में बदलाव को देखें
अब एरो हेड्स के बारे में सीखते हैं
आ ब और सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यहाँ प्रदर्शित होती हैं
आ ब और सी पैरामीटर्स एरो हेड्स के आकर में रूपांतरण में सहायक होते हैं
प्रत्येक को बढ़ाएं अथवा घटाएं और एरो हेड्स में बदलाव देखें
विंडो बंद करने के लिए क्लोज़ बटन पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया को क्लियर करें
सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के लिए CTRL A दबाएं
एडिट मेन्यू पर जाएँ क्लियर पर क्लिक करें
आगे अब सीखते हैं टेम्पलेट्स को कैसे संचालित करें
उसे ओर मैनेज टेम्पलेट्स टूल पर क्लिक करें
प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स नीचे खुलता है
प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ड्राप डाउन सूची के साथ टेम्पलेट्स रखता है
लिस्ट में एमिनो एसिड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स न्यूक्लिक बेसेस न्यूक्लिओसाइड्स और सैकराइड्स हैं
प्रत्येक आइटम सबमेन्यू रखता है
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स सेलेक्ट करें और सबमेन्यू से बेंज़ीन पर क्लिक करें
प्रॉपर्टी पेज पर बेंज़ीन स्ट्रक्चर प्रदर्शित होता है
बेंज़ीन स्ट्रक्चर प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
इसी तरह नैप्थलीन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें और डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
अपने आप से अन्य स्ट्रक्चर्स सेलेक्ट करें और डिस्प्ले एरिया पर स्थित करें
अब फाइल को सेव करें
टूलबार पर सेव थे करेंट फाइल आईकन पर क्लिक करें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल का नाम बेंज़ीन एंटर करें और सेव बटन पर क्लिक करें
अब मौजूदा टेम्पलेट की सूची में एक नया टेम्पलेट जोड़ना सीखते हैं
टूलबार से ओपन आ फाइल आईकन पर क्लिक करें
फाइल्स और फ़ोल्डर्स वाली विंडो खुलती है
सूची से हेक्सेन नामक फाइल सेलेक्ट करें
ओपन बटन पर क्लिक करें
टेम्प्लेट के प्रॉपर्टी पेज से ऐड बटन पर क्लिक करें
न्यू टेम्पलेट प्रॉपर्टी पेज खुलता है
प्रॉपर्टी पेज दो क्षेत्र रखता है नेम और कैटेगरी कैटेगरी क्षेत्र एक ड्राप डाउन सूची रखता है
हम सूची से सेलेक्ट कर सकते हैं या हम अपनी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं
टेक्स्ट क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन्स टाइप करके एक नयी कैटेगरी जोड़ें
नेम क्षेत्र में कंपाउंड का नाम हेक्सेन एंटर करें
डिस्प्ले एरिया में हेक्सेन स्ट्रक्चर पर क्लिक करें
यह न्यू टेम्प्लेट प्रॉपर्टी पेज पर प्रदर्शित होगा
ओक बटन पर क्लिक करें
अब टेम्पलेट्स ड्राप डाउन पर क्लिक करें
हाइड्रोकार्बन्स कैटेगरी सेलेक्ट करें
देखें कि हेक्सेन स्ट्रक्चर टेम्पलेट सूची में जुड़ गया है
अपने आप ऑक्टेन स्ट्रक्चर को हाइड्रोकार्बन्स कैटेगरी में जोड़ें
हेक्सेन फाइल को बंद करें
फाइल मेन्यू पर जाएँ फाइल को बंद करने के लिए क्लोज़ को सेलेक्ट करें
टेम्पलेट्स प्रॉपर्टी पेज बंद करने के लिए सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल सेलेक्ट करें
अब रेसीड्यूज़ के बारे में सीखते हैं
रेसीड्यूज़ निम्न के लिए प्रयोग किये जाते हैं कार्बन चेन से सम्बद्ध कार्यात्मक समूह की प्रकृति ज्ञात करने में कार्यात्मक समूह का स्ट्रक्चर जानने में डेटा बेस में एक नया कार्यात्मक समूह जोड़ने में टूल्स मेन्यू पर जाकर एडिट रेसीड्यूज़ पर क्लिक करें
रेसीड्यूज़ विंडो खुलती है
इसके पास तीन बटन्स हैं न्यू सेव और डिलीट न्यू बटन पर ड्राप डाउन सूची है
सूची से n पीआर सेलेक्ट करें
आइडेंटिटी टैब सेलेक्ट किये हुए रेसिड्यू के सिंबल और नाम दर्शाती है
फार्मूला टैब सेलेक्ट किये हुए रेसिड्यू के स्ट्रक्चर का ढांचा दर्शाती है
इसी तरह सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए s बू सेलेक्ट करें
सेलेक्ट किये हुए रेसिड्यू के सिंबल नाम और स्ट्रक्चर का ढांचा देखें
अब एक नया रेसिड्यू हाइड्रॉक्सी ग्रुप जोड़ें
नया रेसीड्यू जोड़ने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें
सिंबल फील्ड में टाइप करें o ह इसे हाइड्रॉक्सी नाम दें
फार्मूला टैब पर क्लिक करें
आप एक बुलेटेड बांड देखेंगे
कर्सर को बॉन्ड के पास रखें और कैपिटल ओ दबाएं
एक सबमेन्यू ओ और ओएस के साथ खुलता है
ओ सेलेक्ट करें
o ह ग्रुप बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है
सेव बटन पर क्लिक करें
अब सूची को देखने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें
देखे कि o ह रेसिड्यु सूची में जुड़ गया है
अब विंडो को बन्द करने के लिए क्लोज़ बटन पर क्लिक करें
इसके साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा प्रेफरेन्सेस एडिट करना टेम्पलेट्स संचालित करना तैयार टेम्पलेट्स को सेलेक्ट और उपयोग करना एक नया टेम्पलेट जोड़ना
रेसीड्यूज़ उपयोग करना और रेसीड्यूज़ एडिट करना
एक नियत कार्य में टेम्पलेट सूची से सैकराइड्स को सेलेक्ट और उपयोग करें
अन्य रेसीड्यूज़ जाँचें
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद